हम्म पिलर भी बना हुआ है यहाँ पे तरह तरह के पेड़ लगे है आसमान सफ़ेद रंग का है यहाँ पे पानी नीले रंग का दिखाई पड रहा है।

यहाँ पे बहुत सी मोटरसाइकिल भी खड़ी है। यहाँ पे घर भी बहोत से बने हुए हैं| आसमान नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ एक खंभा भी लगा हुआ --

यह एक कॉलेज लग रहा है जो काफी बड़ा है जो भूरे पीले रंग का है।